यहां पर तीन बड़े बड़े ब्लू कलर की टंकी है।

और एक आदमी उसके टायर को चेक कर रहा है।

और यहां इसके बगल में एक नाव लगी हुई है जो इस पार से उसे पार लेकर जाती है।

एक उस पार जा रही है हाथ में चप्पल ले --

लोग इसको जला रहे हैं।

बीच पड़ाव में गुरुद्वारा है जहां पे सिखों का मंदिल है ये।

जहाँ पे सुबह सुबह क्रिकेट खेला होने जा रही है।

ये तस्वीर किसी के घर के पीछे का बागी है।

और ये बच्चा अपने दार पे हाथ रखकर खड़ा है और के--

किसी को देख रहा है इधर।

पार्क के रास्ते पर खड़ा है और ये पार्क बहुत ही सुंदर दिख रहा है।

और इधर बहोत सारे सामान बिखरे पड़े है।

जैसे की लाइटर है चूल्हे का।

यह चूल्हे का कटोरी है और ये दुकान जो है बप्पी करमाकर का है।

और ये साउथ का इमेज लग रहा है।

जहां पे हीरो कंपनी की बाइक सब दो माले छत पे रखी हुई है लाइन से।

और यहां पे लगभग बीस बाइक होगी।

और नीचे में एक आदमी साइड में खड़ा हुआ है।

और सामने चार लड़के साथ में बैठे हैं और पीछे एक लड़का बैठा हुआ है।

ये एक लकड़ी का घर है जो कि दो ताला दिख रहा है।

इस पिक्चर में एक बैडमिंटन रूम है।

और एक दो तीन चार पांच छ सात कूलर लगे हुए है जो एक आदमी ओ कूलर को फिट कर रहा है।

एक व्यक्ति बाहर बैठ के फोन में से बात कर रहा है।

और सामने दो आदमी एक साथ बैठकर कंप्यूटर को देख रहे हैं और उसको चला रहे हैं।

और ये बहुत बड़ी कॉफी शॉप लग रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक जिम दिख रही है।

ये तस्वीर कोई बड़ा डैम डैम के साइड की है।

और ये ब्रिज के साइड में रस्ते पे एक आदमी खड़ा हुआ है।

ये इमेज में मुझे एक पार्क दिख रहा है।

और ये इमारतें एक होटल या रेस्टोरेंट जैसे है।

जिस को बहुत बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया हुआ है।

इस तस्वीर में एक दुकान दिक रही है।

जोकि ज्यादा बड़ा नहीं है।

ये तीन मंजिला कॉलेज है।

तस्वीर शायद की तरफ की है।

ये एक होम ट्यूशन है जहां पे घर पे एक टीचर कुछ बच्चे को टीच कर रहे हैं।

टेबल पे एक साथ पढ़ रहे हैं।